गेट पे भूरा रंग पोता हुआ है।

और पीछे कुछ स्वास्थ्य के वैज्ञापन लगे हैं।

सड़क है सड़क पर बाइक खड़ी हुई है।

जिसकी चोंच पीले कलर की है।

या हाथ में फावड़ा लिए हुए हैं।

केमिस्ट्री फिजिक्स मैंथ्स एंड बायोलॉजी लिखा हुआ है।

उसके बाजू में एक और बिल्डिंग दिख रही है।

नीचे जमीन पर लाल कलर के टाइल्स लगे हुए सीमेंट के दिखाई दे रहे हैं।

दोनों बिल्डिंगो में बहुत सारे खंबे है।

इस गार्डेन में नीचे की तरफ पूरे में अ ग्रीन कलर का कॉलिंग बिछा हुआ है।

और इसमें आई लव एच.पी. लिखा हुआ है।